जिसमें ब्लैक कलर का गेट है और पूरा वाइट कलर है और बाहर एक कार खड़ी है दो कारें खड़ी है

और उसके बगल में एक फुटपाथ बना हुआ है फुटपाथ के ऊपर शैडो भी बना हुआ है और ब्लैक कलर का कुछ सूटकेस जैसा --

जिसमें एक बच्चा है एक आदमी है एक औरत है और एक छोटी सी बच्ची है वो पानी में खेल रहे हैं।

जिसमें बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है बहुत सारे लोग खड़े हैं अंदर।

टाइल जो है वो उसने हाथ में लिया हुआ है वो कुछ काम कर रहा है और आसपास में काफी सारा सामान रखा हुआ है।

जिसने ब्लैक कलर का शर्ट पहन रखा है।

यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक ब्लू कलर का झूमर लगा हुआ है।

किया हुआ है और बाहर एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारी घास भी दिखाई दे रही है हरे कलर की और बाहर पेड़ भी है।

यहां पर एक पहाड़ी सी दिखाई दे रही है जिसमें ऊपर और नीचे काफी सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है और नीचे --

यहां पर एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारे बेड भी लगे हुए हैं।

यहां पर एक दुकान दिख रही है जिसमें बहोत सारा सामान रखा है कप --

और सामने दीवार पे वॉलपेपर भी लगा है।

ओर नीचे जो है काफी सारा पानी जो है बह रहा है और तीन चार जो है लोग भी खडे है।

और जो है इसमें धूप भी दिखाई दे रही है और तीन चार जो है इसमें ए_सी के--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

और ऊपर उसके एक पेड़ भी जो है दिखाई दे रहा है और शेर जो है साइड में देख रहा है।

काफी सारे सोफा भी रखे हुए हैं और उसके पीछे काफी सारी चेयर भी रखी हुई है।